यहां पर लिखा हुआ है कस्टमर एंड गिफ्ट स्टोर और यहां पर बहुत सारी लाइट लगाई हुई हैं।

यह एक बाल काटने वाला दुकान है यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगाई हुई है यहाँ पर पंखे है।

बहुत सारे इंसान है एक इंसान ने टोपी पहनी हुई है वाइट कलर की।

घास फूस है यहां पर बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स की मार्बल्स हैं।

नीचे रे रे रेलिंग है पीले और लाल रंग की और उपर कि सी_सी_टी_वी कैमरा लगाई हुई है घड़ी है जिसमें दस बज रहा है।

एक आदमी ने ब्लू कलर शूट पहना हुआ है और यहाँ पर पीछे भू मुर्ति है यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं।

यहां पर बहुत बड़ा एक ठो कारपेट मोड़ा हुआ है यहा पर नीचे फ्रस है ऊपर लाइट्स लगाई हुई है यहा पर एक पंखा--

यह एक स्कूल की तस्वीर है यहां पर स्कूल के गेट पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पर एक दो बच्चियां एक पे बैठे हुई है।

यह एक दुकान है जहाँ पे लिखा हुआ हैं फैंसी केक शॉप उसका बगल में लिखा है सुधा दुध और यहां पर बहुत सारे इंसान है।

यह एक रूम है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका टीशर्ट का कलर व्हाइट है।

और यहां पे एक टेबल पे रखी हुई है लाल कलर की फाइल और हरे रंग की फाइल ।

यहां पे नीचे बहुत सारे आदमी बैठे हुए--

यहां पे एक आदमी ने बल्टी में पानी रखा हुआ है यहां पर एक ब्लू कलर का तिरपाल है।

एक मैरिज हॉल है मैरिज हॉल में बहोत बड़े शिशा है यहां पर बहोत सारे लाइट्से लगाई हुई हैं यहां पर बहोत सारे फूल हैं।

यहां पर बहोत लंबे लंबे पाइप लगाए हुए --

यह एक कपड़े का दुकान का फोटो है यहां पे बहुत सारी रैक

यह एक रेलवे ट्रैक है यहां पर बहुत लंबी लंबी रेल खड़ी हुई है।

यहा पर एक आदमी ने दाढ़ी बनवा रहे हैं। यहां पर एक सीसा है। यहां पर बहुत सारी सामाने रखी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारे इंसान हैं एक इंसान ने गंजी पहनी हुई है वाइट रंग की।

यहां पर पा बोर्ड है यहां पर लिखी हुई है ऊपर यूनिवर्सिटी डिपीट ऑफ पोलिटिकल साइन्स ।